पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो डांस कर रही और सारी की सारी लड़कियाँ बहुत सुंदर दिख रही हैं और कंगन पहनी हुई है।

और सब कोई एक ही स्टेप करते जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के ग्रीन कलर के और व्हाइट कलर के लगे हुए हैं और एक लड़की पिंक कलर की ड्रेस पहनी है।

और एक पेड़ है सूखा जिसपे एक चिड़िया बैठी हुई है और बहुत नजारा बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत सुंदर है और यहाँ पे जाके हमे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मैं वहाँ पे जाऊ और ये --

मंदिर के ऊपर का पीक लग रहा है यहाँ पे साइड में शायद से बहुत बड़ा सा मंदिर होगा जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और नीचे में बहुत सारे लोग हैं ।

अच्छा दिख रहा है मुझे ये एक बहुत बड़ा नदी जैसा दिख रहा है जिसके आस-पास बहुत सी बड़े-बड़े खेत भी है जो हरे भरे पास में थोड़ी सी चट्टान जैसी भी है जहां पे छोटे-छोटे घास उगे है और पानी इतने अच्छे से बहते जा रही हैं जो देखने में बहुत ही लाजवाब है बहुत ही अच्छा है बहुत ही --

और मैक्सो जैसा भी और ये कंपनी का बहुत ही अच्छा माल होता है और यहाँ पे देखो बहुत सारे ए क्वालिटी के यहां पे वाशिंग मशीन भी रखे हुए है।

अच्छे-अच्छे बहोत सारे चीज रखें हुए है और फ्लावर्स तो बहुत ही अच्छे दिख रहे है और यहाँ पे एक अंकल भी खड़े हुए है साइड मे शायद पेंटिंग --

बहुत अच्छा दिख रहे है यहाँ पे एक बिजली का पूल जैसा भी कुछ बना है जहां से बिजली जा रही है और नीचे मे बहुत सारे पानी और यहाँ पे शायद जंगल जैसा है।

उसमें एक गिरने का डर होता है उनको सेफ़्टी रूल को पता होना चाहिए और यहाँ पे एक अंकल जा रहे हैं टी-शर्ट पहन के उधर से बाइक से पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं और पास में एक और पेट्रोल पम्प है और वहाँ पे भी --

जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर जो सूर्यास्त अस्त होने के बाद जो दिख रहा ऑरेंज ऑरेंज ये भी तो सुपर्ब ऐसा नजारा बहुत ही कम दिखता है और दिखने में बहुत ही सुपर लग रहा है और ऐसा नजारा बहुत ही --